यह एक जनरल स्टोर की दुकान है इस दुकान में ब्रेड पाउडर मिल्क।

क्लेट कुरकुरे सब कुछ रखा हुआ हैऔर लाइट लगी हुई है।

और इसी दुकान में काफी सारे प्रोडक्ट किराने के भरे हुए हैं।

ये आसपास में खड़े हैं कुछ बैठे हुए हैं।

और आकाश मानो उस पहाड़ी एरिया कुछ हो रहा है।

और काफी सारे रोशनदान लगे हुए हैं तीनों फ्लोर का--

और क्रिश्चियन का इसमें सिंबल भी ऊपर बना हुआ है इस बंगले में और बगल बंगले के आस पास में पेड़ पौधे हैं।

ये एक इस चित्र में सरमोमर रखा हुआ एक रूम है।

बड़ा भी है छोटा भी है और इस रूम में दरवाजा भी है और लाइट भी चल रहा है।

और उसी के बगल में दो बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं और लाइट बल्ब भी लगा हुआ है।

उसके बगल में बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

ग्राउंड बना है उसमें बैनर लगा हुआ है।

या कोई ऑफिस है ऑफिस में।

यह इस चित्र में एक निर्माण स्थल।

की जगह हैऔर उस जगह पर एक।

गाड़ी है जो कि इसमें मिट्टी का ढेर र इकट्ठा कर रही है।

इस चित्र में उस स्त्री के दुकान का।

पूरा चित्र है और कुछ स्त्री अपने कस्टमर के--

बाल बना रहे हैंऔर कोई कस्टमर बैठा हुआ है कोई स्त्री बाल बना रहा है।

और जहां कारखाना का एक किनारा स्टोर रूम है जो कि इलेक्ट्रिक बोर्ड बना कर के उस।

कुछ दो आदमी बगल में बैठे हुए हैं।

और उसके बगल में दो बाइक खड़ी है तीन चार चेयर है।

और कई सारे लाइट्स लगे हुए हैं।

जैसे मानो टेबल रखा हुआ हैउस टेबल में।

है और ये आसपास के उसके सुंदर-सुंदर फ्लावर्स प्लांट लगे हुए हैं।

इस म चित्र में दिखाया जा रहा है कि--

अ कुछ प्लास्टिक के बंडल है।

अगल बगल में चेयर लगा हुआ है मेज लगा हुआ है।

बहोत बड़े स्तंभ लगे हुए हैं स्तंभ पर गमला रखा हुआ है गमले में--

शो के लिए दिखाया गया है एक गुलाबी--

ये इस चित्र में एक मार्केट का दृश्य हैं।

इस अः इस चित्र में अः किराने की भी दुकान है।

यहां पे स्कूटी खड़ी हुई है बाइक भी खड़ा है ऑटो रिक्शा जा रहा है।

इस चित्र में अम झींगा मछली दिखाया जा रहा हैं जो की बहोत लोग इस मछली का नाम नहीं जानते हैं।

और ये झींगे मछली बहुत ही--

फिटनेस जिम का हॉल है।

साइड में बिल्डिंगें भी दिखाई दे रही हैं।

और ये अः मतलब यहां पे कई सारे--

इलेक्ट्रिक वो किसी कारखाने का मशीन है इसमें तीन चार लाइट है राड है।